एक साइड में रखना है और डिपोल पानी है पानी का--

लैपटॉप चार्जिंग और यहां पे है स्टेपलर पेन और एक पेज और लैपटॉप का माउस --

दुकान दिखाई दे रहा है पोस्टर है यहां के लिए एक मात्र--

यहां पे फर्नीचर है जो अलग-अलग किस्म के फर्नीचर है यहां पे हैं जो अलग-अलग है खाने है जिसका कलर अलग-अलग है व्हाइट हैं चॉकलेटी है।

यहाँ पे है --

यहाँ पे दुकान है जो यहाँ पे है --

यहाँ पे सब लैपटॉप दिखाई दे रहा है और यहाँ पे स्टार्टिंग मशीने दिखाई दे रही है और यहाँ पे बहोत मशीने है जो अलग अलग किस्म की मशीन है।

यहां पे होटल है जिसका नाम है चाय ओम हाय ओम चाय यहां पे एक चायवाला जो ड्रेसिंग पहना हुआ है वर्क यहां पे है।

पिंक कलर के शर्ट में और एक आदमी यहा से जा रहा है और यहा पे खड़ी हुई है रात का टाइम है।

यहा पे एक दुकान है जिसका नाम है महाचनचला जो पैसे गिन रहे होगे ।

यह पे विक्ट्री कैफ़े हैं यह पे दो लोग थड़े है एक फ़ोन पे बात कर रहा हैं और एक केजी बाग़ में आगि ब्रोकन का वुज़ू बनाते हुए हैं।

यहाँ पे --